पिक्चर झूले भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें एक पंख लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

आ बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्वेल्थ कॉमर्स ।